यह एक दुकान का सीन है जहां पे एक आदमी बैठा हुआ है।

बाहर दीवाल दीवाल है ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर का--

संजय चन्द्रबंशी लिखा हुआ है मोबाइल नंबर ऐट थ्री फोर ज़ीरो टू फाइव --

यह एक पहाड़ और जंगल का दृश्य है जहां पे ढेर सारे आदमी खड़े हैं।

पीछे बहुत सारा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और पानी बह रहा है।

यह एक गार्डन का सीन है जहां पे एक कुर्सी रखा हुआ है एक पेड़ है।

साइड में क क कुछ आदमी खड़ा है वहां पे टेंट झोपड़ी जैसा कुछ बना हुआ है।

यह कोई गोडाउन का दृश्य है जहां पे एक छोटा सा उ स्टेयर लगा उ सीढ़ी लगा हुआ है और बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

यह एक झरना है अह पत्थर के बीच से बह रहा है साइड में पत्थर है।

ऊपर सर्कल है पिलर का नीचे चरखूट है।

और यहां पे तीन पेड़ है बड़ा बड़ा।